टैटू दिखा रहा है और दो लड़कियाँ अपने मोबाइल में देख रहीं हैं।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

वहां पे बोर्ड पे लिखा है श्री धारेश्वर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड --

मंदिर के बाहर एक गोलाकार गुंबद में त्रिशूल लगा हुआ है।

ये इस थंब का ऊपर का हिस्सा नोकिला और गोल्डन कलर का है।

एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी बाइक पे पेट्रोल भरवाने आया है और दूसरा आदमी पेट्रोल भर--

वही स्टेज के सामने व्हाइट चेयर्स लगी हुई है चेयर्स पर कुछ लोग बैठे हैं और एक लेडी खड़ी--

मुझे इस चित्र में दिखाई दे रहा हैं ये एक गैस एजेंसी हैं।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

जहां पे वॉकिंग एरिया रोड जैसा बना हुआ है।